फ्रोके टंगी है काफी गुब्बारे है लाल और सफ़ेद रंग कर के ऊपर फ़्रॉके --

ये चित्र एक कपड़ो के मार्केट का नजर आ रहा है जिसमे काफी सारे कुर्ते टंगे हुए है स्टूल रखे हुए है।